ये एक पेरोट तोते का दुकान है। पीछे बोहोत सारे पिंजड़े हैं।

ये एक बहुत बड़ा गार्डन भी है और पार्क भी है यहाँ बहुत तरह-तरह की राइड्स है पूरा पिंजडा बना हुआ है इसमे ट्रेन चल रहा है गोल-गोल घूरेगा और घूर के नीचे जायेगा।

और आसमान बिल्कुल ही नीला हो गया है।